पास में एक पानी दिख रहा है हरा रंग का--

तांबा उस पर एक स्टॉप रखा हुआ है येलो रंग का--

यहां पर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है उसे ब्रिज का कलर --

वहां पर गोलियों का कलर चॉकलेट --

उस रेस्टोरेंट में कुर्सीए रखी हैं चॉकलेटी रंग की।